दुकान लगे हुए हैं।

यह एक रूम है इस रूम में बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं एक टीचर कुर्सी में बैठे टेबल पर --